बोहोत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जो कि सामने बोर्ड में दिख रहा है और उसके ऊपर से एक इलेक्ट्रिक तार गुजरा हुआ है।

यह बस स्टैन्ड है जहां पर बड़ी-बड़ी बसें आकर रुकती है और यहाँ पर दो तीन बसें दिखाई भी पड़ रही है।

चित्र में एक डैम को दिखाया गया है।

कुछ लोग अस्नान करते हुए दिखाई पड़ रहें हैं ।

इसमें कार्यालय का चित्र दिखाया गया है जो फतेहपुर का है और इसके बगल में एक पेड़ के दिखाया गया है।

रोड के किनारे में कुछ गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई दिख रही हैं और इलेक्ट्रिक पोल भी दिख रहे --